भी होगा और एक मॉल है जहां पे--

रेड कलर का डिजाइन है और ब्लू कलर का शटर है और वाइट कलर का ग्लास जैसा है।

यहां पे दो गांज है और एक पीपल का गाछी है। पीपल के गाछी से बहुत बड़ी छांव है। वहां पे एक दो दुकान भी लग रहा है।

तेल के करखाने में काम कर रहे होंगे एक बुढ़े अंकल जी जा रहे हैं।

और एक फैन है जिसका कलर ब्लैक है और एक ये हॉल से जैसे--

और ये लाइन खींचा हुआ है एक सीमेंट का बना हुआ है और एक फुटबॉल मैदान है और वृक्ष है अच्छे हैं।

यह कोई बर्गर का क्या बोलते हैं इसको कोंची बर्गर ये बर्गर का दुकान है।

और ये कच्ची सड़क है जिस पे अभी गिट्टी बालू तो नहीं बस ईटा का भूसी गिरा है।

पीछे गोल्डन कलर के स्टीकर भी लगे हैं साइड में सीरिया भी है वहां पे लैपटॉप के लिए वो स्टेन भी है और काफी सारी अच्छी चीजें हैं।

यह कोई नए मशीनी करण है जिसमें बहुत सारे प्रकार के पार्ट्स इसमें लगे हैं।

जहां पे दो व्यक्ति बैठ के पूजा कर रहे हैं अ हमारे प्यारे पंडित जी उसकी पूजा करा रहे हैं।

वहां पर काफी सारे झूला है। जिस पर बच्चे अच्छे खासे झूल रहे हैं। पीछे दो पेड़ हैं जो काफी अच्छे लगते हैं और अच्छे हैं।

चार पांच व्यक्ति हैं औरतें नहीं हैं चार पांच मर्द हैं जेंट्स हैं।

और पीछे काफी सारे वृक्ष हैंजो देखने में काफी बहुत ज्यादा सुंदर अति सुंदर ये लगता है।

ये किसी पुराने जमाने के मूर्तियां बने हैं जो एक रियल घटना हो सकते हैं।